बोहोत अच्छी लग रही है। दिखने में लक्ज़री होटल है।

और प्लेटफार्म के अंदर एक भी आदमी दिखाई नही दे रहा है।

बहोत बहोत खाली खाली सा लग रहा है। शायद कुछ हुआ है।

कटिंग किया है साइड से अच्छा लग रहा है।

ऑटो ड्राईवर से पूछ रहे हैं।

यहाँ पे तीन देवी- देविओं का मूर्ति दिख रही है। मिडिल में सांई नाथ जी का मूर्ति है।

सांई नाथ जी शांत होकर बैठे हुए है। ब्राह्मण जी पूजा कर रहे है मंदिर के अंदर।

ये देख के पता लग रहा है। ये एक हॉस्पिटल है।

शानदार रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट के अंदर --

और कुछ लोग खड़े होके देख रहे हैं और सोच रहे हैं ता की --

ये एक रेस्टुरेंट है। रेस्टुरेंट के अंदर टेबिल के ऊपर एक ट्रे रखा है।